तस्वीर मे मुझे एक बिल्डिंग दिख रही हैं इस तस्वीर मे मुझे आसमान दिख रहा है।

इस तस्वीर मे मुझे एक पेड़ दिख रहा है।

इस तसवीर मे मुझे एक प्लेट दिख रहा है एक कटोरी दिख रही है।

इस तस्वीर मे मुझे एक घर दिख रहा है इस तस्वीर मे मुझे गमले --

इस तस्वीर मे मुझे एक सीडी दिख रहा है इस तस्वीर मे मुझे एक बच्ची दिख रही है।

तस्वीर मे मुझे एक गाडी दिख रही है इस तस्वीर मे मुझे एक फॅमिली दिख रहे है।

इस फोटो में मुझे एक मंदिर दिख रहा है इस फोटो में मुझे केले के पत्ते दिख रहे है।

फोटो में मुझे कुछ लोग दिख रहै है फोटो में मुझे फूल दिख रहा है।

इस तस्वीर मे मुझे मंदिर दिख रहा है इस तस्वीर मी मुझे एक लेडीज दिख रही है।